ये एक वॉटरफॉल है जिसमे एक दो दीवारों के बीच से होते हुए पतली लाइन में पानी बह रहा है उसमे कुछ लोग बैठे हुए है।

इस फोटो मे एक वॉटरफॉल दिख रहा है जिसमे बहुत सारे लोग नजर आ रहे है एक लड़की फिसल पट्टी पर फिसल रही है इसकी गुम्मद ऊपर तरफ बनी हुई है इसमे बहुत सारे कलर है ग्रीन है रेड है।

--की तरफ अपने हाथ बढ़ा रहे हैं आस-पास पेड़-पौधे और ढलता हुआ सूरज पानी में दिखाई दे रहा है।